जो कि ब्राउन कलर में दिख रही है।

यहां पर बहुत सारे फ्रूट दिख रहे हैं।

लेय ढंगाए हुए हैं जैसे कि स्पाइडर मैन का --

घर के सामने हिस्से छोटे-छोटे--

बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं छोटी सी लाल कलर --